टाइल और सिली रखी हुई है।

पीछे बहोत सारी लकड़ियां है और बड़े बड़े दरवाजे रखे हुए हैं।

एक आदमी यहां खड़ा हुआ है और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

यह एक विधालय लग रहा है।

और बड़ी बड़ी चाबियां टंगी हुई है।

यहां पर काफी बड़ी गाड़ी है जिसमें अभी काम चल रहा है।

यह एक कैफे लग रहा है जहां बहोत ही चाइनीज सामान मिलता है।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

जैसा की मैं देख पा रही हूं सामने एक बड़ा सा कमरा है।

दीवारों पे काफी सुंदर चित्रकारी की गई है और लाइ--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं बहोत बड़ी बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

और बहोत सारी पैड़ियाँ दिखाई दे रही है।

यहां बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं।

यहाँ एक तलाव दिखाई दे रहा है।

यहां एक गार्डन भी दिखाई दे रहा है।